कि एक सफेद रंग का मम बिल्डिंग दिख रहा है यहां पर लिखा हुआ है कुछ पुष्पा पैरा मेडिकल कॉलेज एंड यहाँ पर खिड़की दिख रही है खिड़की बंद है एंड बहुत सारा पेड़ दिख रहा हैं फूल का ।

एक पैर है छोटा सा घास है हरा रंग का --

बोहोत सारा पेड़ है । एक घर है घर में खिड़की दिख रहा है एंड पानी दे रहे हैं ऐसे --

एहमें बहुत सारा बिल्डिंग दिख रहा है बिल्डिंग में कोई कन्स्ट्रक्शन नही दिख रहा है सीढ़ी दिख रहा है।

एंड छोटा सा घर दिख रहा है झोपड़ी घर दिख रहा है पेड़ दिख रहा है।